खड़ी हुई है। यहाँ पर किसी चीज का मंच लगा है शायद यहाँ पे कुछ बंट रहा है |

यहाँ पे लड़कियाँ भी है जो बहुत अच्छी लग रही है और डांस कर रही है ये कोई त्योहार का --

यहाँ पे लेपटॉप है माउस है पेन है कागज़ है स्टेपलर है टेबल है और यहाँ पे बीच में एक कैलेंडर लगा हुआ है।

जंगल है यहाँ पे बहुत से हिरनें हैं।

यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है जहाँ पे सब लोग थाली में खाना लेके खा रहे है ये शायद बंफर सिस्टम लग रहा है बफर सिस्टम ।

इसके उपर किसी ने रंग फेकने की कोशिश की है गाय की पूंछ किसी ने रंग दिया है इसके कान में पीला सा --

यहाँ पे बहोत सारा पताके लगाए गए हैं जो रंग-बिरंग के है।

और ये ट्रैक्टर कोई चला रहा है यहाँ पे एक फौजी है जो इसको देख रहा है देखभाल कर रहा है की कोई दंगा फसाद न हो जाए।